इस चित्र में सामने एक लाल रंग की कोठी नजर आ रही है जिसके अंदर--

इस चित्र में बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टाने नजर आ रही हैं।

एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम और--

दूसरी ओर एक लाल सड़क है।

और कुछ प्लास्टिक की गंस रखी--

केले लटके हुए दिख रहे हैं।

तीन महिलाओं ने साड़ियां पहनी है।

जहां पर स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता हुआ दिख रहा है।

यहां पर एक छोटा सा तालाब और बहुत सारे पत्थरों से एक छोटी सी इमारत बनी हुई है।